और प्लेटफ्रॉम टीन सेट का बना हुआ है साइड में पेड़ भी दिख रहा है नीचे प्लेटफ्रॉम में पिंक कलर की पट्टी भी लगी--

कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई है यहाँ--

लिटल लेम्प इंग्लिश स्कूल दिख रही है स्कूल का गेट लगा हुआ है।